ये कॉफी शॉप है। यहाँ पर सभी तरह की कॉफी मिलती हैं। यहाँ पर डार्क कॉफी व्हाइट कॉफी और बोहोत सारी वैरायटी की कॉफी भी मिलती है।

पैर को स्विचिंग और आपका स्विचिंग कर रही है। एक बगल वाली ये औरत के पर सीधी नहीं --

यह एक बहोत ही बड़ा फुव्वारा है। यह बहोत ही बड़ा एक फुव्वारे का पूल है। यह बीच में --

और अच्छी तरह से पानी निकालती है और इसको देखने पानी इसका जो सुबह होती है सुंदर है। उसके आगे एक बहोत ही बड़ा बिल्डिंग --

यह ए किताब की दुकान है। यहाँ पे सभी तरह के किताब मिलते हैं। यहाँ पर पौराणिक और एन.सी.ई.आर.टी. यू.पी.एस.सी. एन.डी.ए. --

यहाँ पर दो वो गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर एक वैन और उसके बगल में एक सफेद रंग की वेगन आर गाड़ी खड़ी हुई है।

वैन का दरवाजा खुला हुआ है एक आदमी उसके अंदर घुसकर कुछ खोज रहा हैं।

यह एक घर है इसका बाहर लिखा हुआ है संदेश अकाडमी ।

यह एक मछली मार्केट है। सभी तरह की मछलियाँ मिलती हैं यहाँ पर मछली बड़ी-बड़ी मछली बड़ी मछली छोटी मछली --

और लाइटिंग और यहाँ की पेंटिंग बहुत ही अच्छी तरह से की गई है।

की मंजिल तक पहुंचना है। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई है। एक गाड़ी पर हेलमेट भी --

यह एक दुकान है। यहां पर फेशियल होता है। यहां पर औरतों का फेशियल होता है। यहां पर सभी प्रकार की क्रीम रखी है सनस्क्रीन मेकअप क्रीम --

यहाँ पर सभी छात्र अपना-अपना मॉडल बना रहे हैं।

और बोहोत सरे छात्र अपने-अपने मॉडल को बनाने के लिए बोहोत ही दिल से मेहनत कर रहे हैं और बोहोत ही व्यस्त है।

यहाँ पर शेरवानी भी रखी हुई है। बोहोत सारी रखी हुई हैं और छोटे-बड़े बच्चों के कपड़े भी रखे हुए हैं और यह बोहोत ही बड़ी --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

यह डी.जे का नाम शर्मा ऑडियो डी.जे है। यहाँ पर डी.जे लाइट भी लगी हुई है और यह बहुत ही तगड़ी डी.जे है।

यह एक गैराज है। यहाँ पर गाड़ी- बड़ी-बड़ी गाड़ी को बनाया जाता है। बनाया जाता है। यह कार मारुति सुजुकी है।

यह बोहोत ही बड़ा एक बंगला है। यहाँ बंगले में रम्य पारिवारिक परीक्षण --

संस्था हथियापुर है। यहाँ पर यहाँ बहुत ही बड़ा एक --